सेटिंग्स वहाँ का काफी अच्छा है ये कूलर है फैन है।

ये किसी रेस्टोरेंट का इमेज लगा हुआ है।

यहाँ पे मिट्टी का कुछ अअअ म--

टेबल फैन है वहाँ पे कुछ बच्चे डांस के पोजीशन में खड़े हैं उनकी एक टीचर है वहाँ पर डांस पोज --

एक आदमी टोपी लगाए हुए है एक आदमी पीला शर्ट में है।